सड़क के दोनों ओर वाहन आओ-जाओ कर रहे हैं।

यहाँ पे बहोत सारे खुर्सियां रखी हुई है।

यहाँ पे एक रास्ता है रास्तों के आजु-बाजु बहुत सारी झाड़ियाँ है।